उसके रील एक इंसान दिख रहा है उसने ब्लैक कलर का पहना है--

और उसमे डोर दिख रहे है तीन--

तीन रूम दिख रहे है यहाँ पे और सीधा पता नही--

- और बिच में भी बलून लगे हुए है कुछ लोग खरे है तिन लेडीज है और दो जेन्स है लेफ्ट साइड --

पिंक लाइट है और बीच में कर्टेन लगा हुआ है ग्रीन कलर का--

ये एक ग्राउंड है पता नहीं किस चीज़ का ग्राउंड है पर कुछ ग्राउंड है और बेंच रखी हुई है यहाँ पर यलो कलर की--

चारो तरफ अलग अलग हाउस बिच में ब्राउन कलर का है।

इस पिक्चर में पता नहीं कौन से डब्बे हैं या जैसे कि वो ए_ टी_ एम_ होता है ए_ टी_ एम_ की तरह बाहर ऐसे जैसे लिखा हुआ है।

इसकी स्पेल्लिंग है एक्स_ए_वि_ए_वि_ई_आर_आई_ए बस इतने है पिच्चर में जो दिख रहा है हमे--

सामने एक गेट लग रहा है आने का कार भी दिख रही है।

ब्लैक कलर का है कांच लग रहा है आस पास जो--

ब्राउन भी नहीं है मतलब क्रीम लाइट है कुछ ऑफिस टाइप लग्ग रहा है।

सामने पिक्चर में रिसेप्शन है और लेफ्ट साइड एंट्री है आने की और दो पोधे रखे हुए है।

और लेडीज है दो एक जेन्स खरा है साईकल और लारी वाला लगरा है बस इतना थोडा टुटा फूटा है।

और दो इंसान है मतलब आगे एक खड़ा है मास्क पहना हुआ।

और एक बैठा हुआ है फ़ोन पर बात कर रहा है सर पर पगड़ी है वाइट कलर की--

और यहाँ पर दो ड्रम दिख रहे है और इसके नीचे ब्लू कलर का--

शायद एसा लग रहा है डस्टबीन है एसा कुछ दिख रहा है पिक्चर में--

और उस इंशान ने पेना हुआ है ग्रे कलर का और ब्लू कलर का बिच में पट्टी है रेड कलर की टीशर्ट पेनी हुई है।

ये करियाने की शॉप लग रही है जहा पे रखा हुआ है हार्पिक है ओरेंज कलर का है दवा आती है वो है।

और तो पता नहीं क्या है समझ नहीं आरहा है इतना पर बहोत सारी चीज़े यहाँ पर रखी हुई है।

यह चर्च लग रहा है पिक्चर में पीछे चर्च का मतलब गॉड है।

और फेदर सबका बेठे हुए है यहाँ पर चर्च में--

एसा लग रहा है एक गेट है यहाँ से जाने का--

पर कुछ कार वार नहीं है पेट्रोल पंप की मशीन दो रखी हुइ है।

यह स्टूडेंट रूम लग रहा है इस में पढ़ाई चल रही टूशन लग रहा है।

और जो साइड में वो वाला राइट साइड वो भी पेंट किय हुई है।

वो नेवसपपेर है बॉक्स है और ऑनलाइन पेमेंट का रखा हुआ है।

यह कोई गेरेज लग रहा है पिक्चर में जैसे बाइक रखी हुई है।

और पेड़ लग रहे है छोटे छोटे गाछ जो वो है और तो कुछ पिकचर में नहीं दिख रहा है यहाँ पे --

एक मशीन रखी हुई है पूरा रूम व्हाइट कलर का है मशीन भी वाइट कलर कि है फ्लोर भी वाइट कलर का--

और डमरू भी रखा हुआ है वो दिख रहा है डमरू अच्छे से--

एक कार है वाइट कलर की और मेकानिक कार को साफ कर रहा है मेसिन हात में लिए हुए।

की तरह वो कार को साफ कर रहा है और जो इंसान है उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुए है।

ये पाइपो वाला स्प्रे है काफी लम्बा पाइप है इसमें--

होटेल जैसा लग रहा है अलग अलग जैसे चेयर टेबल ऐसा रखा हुआ है अलग अलग जगह पे--

और व्हाईट कलर का लग रहा है एरिया कुछ लग रहा है घर है क्या है होटल है धरमशाला है वो समझ नहीं आ रहा है फ्लोर पिंक कलर का है।

और एक्टिवा खड़ी है दो एक्टिवा खड़ी है बाइक खड़ी है।

जो चीज़े यहाँ पर पैकेट रखे हुए है कुत्तो के खाने के पैकेट है।

नि नि नि एसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे रॉयल --

बस येही रखा हुआ है पास में और कुछ नही है।

ब्लू कलर के पैकेट है बहोत सारे रखे हुए है नीचे वाइट कलर का है।

यहाँ तरह की नयी रखी हुई है नमकीन नेउच्चपर रखा हुआ है ऊपर रखे हुए ट्रे रखी हुई है।

एक टेबल रखा हुआ है कांच का टेबल है।

उर अंदर लाइट्स दिख के जेसे बटन ह बटन दिख रही है।

वहा पर दो लोग खड़े है और एक पर दो जने बैठे हुए ह--

एक फाइल वगैरह है रेड कलर की एक इंसान खड़ा हुआ है।